टफ नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

रैम्प बनी हुई है जिस पे टाइल्स लगी हुई है। सामने --

आदमी मछली को हाथ में पकड़ कर देख रहा है और एक आद- आदमी --

एटीएम का बोर्ड लगा है। लाल कलर का बोर्ड में- लाल कलर का बोर्ड है नीचे।

और ऊपर की तरफ भी बालकनी दिखाई दे रही है।

एक अ एक इस बॉक्स में --